चित्र में मुझे कई तस्वीरें दीवार पे टंगी हुई दिख रही हैं।

चित्र में कुछ लड़के पेपर के गुलदस्ते बनाते हुएं--

चित्र में मुझे बहोत सजावट सा दिखाई दे रहा है।

चित्र में मुझे कई लाइटिंग्स जलती हुई दिख रही है।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

कैलकुलेटर और कॉपी रखी दिख रही है।

चित्र में मुझे एक लड़के का अंगूठा दिखाई दे रहा है।